यह एक टब में रखें चॉकलेटी कलर का टब है इन सभी आलुओं पर मिट्टी लगी हुई हैं।

पैक्स होके भी रखे हुए हैं सूट यहां पर काफी ज्यादा लाइट्स हैं बहोत खूबसूरत जगह है बहोत खूबसूरत सो--

पैंपलेट लगी हुई हैं यहां पे एक और बॉय है जिसने ब्लू कल--